ये एक आयुर्वेदिक शॉप है यहाँ पर इसका काउंटर रखा है सामने सारी द दवाइयाँ और ये सब चीजें हैं।

एंड जो सारी मशीनें है उनके जो कलर्स है वो ब्लैक कलर्स है।

सामने जो है वह कांच लगा हुआ है आसपास की वाल्स का कलर व्हाइट है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं

ये एक जिम है यहां पर जो मशीनस है वह रेड एंड ब्लैक कलर की है--

यहां पर लोहे की बेंचेज भी है और रूम का कलर व्हाइट एण्ड रेड है जो की बहुत अच्छा है।

ये एक हॉस्पिटल का रूम है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं तीन।

पीछे जो हैं वो करटन्स डले हैं मेहरुन कलर के।